दो चेयर दिख रहा है एक सोफा के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है एक मिरर दिख रहा है।

ऊपर में आसमान हल्का हल्का दिख रहा है।

यह एक ग्यारह और बारह का कोचिंग सेंटर का दृश्य दिख रहा है यहां पे बाहर में एक शटर दिख रहा है उसके ऊपर पोस्टर चिपकाया हुआ है छोटा सा।

एक दरवाजा दिख रहा है नीचे एक डब्बा रखा हुआ है।

बगल मै एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसके हाथ में एक पेपर है।

बहुत सारे इधर लाइट जल रहे हैं दीवार का कलर व्हाइट किया हुआ है बाहर एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है।

यहां पे रोड का दृश्य दिख रहा है रोड के ऊपर टेंपो है बस है और रिक्शा बहुत सारे हैं।

दो गाड़ी दिख रहे हैं जिसमें ऐनक दिख रहा है इधर बहुत सारे ब्लू कलर के शटर दिख रहा है खुला आसमान दिख रहा --

पीछे एक व्यक्ति है उसके बगल में एक गाड़ी दिख रहा है पीछे कुरकुरे रखा हुआ है।

ऊपर बहोत सारे तार लगे हुए हैं और घर दिख रहे हैं ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।